यह एक होटल है। होटल में बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है।

ऊपर में दो खिड़की हैजो कि ग्रीन कलर दिख रहा है।

और बाहर में दो बाइक भी है और जे एक सीहढ़ी में जो कि ब्लैक कलर का है।

बगल में पेड़ भी है और टोटो का कलर पीला दिख रहा है।

दो तीन पोल भी है पोल के ऊपर लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक राशन दुकान है और यह दुकान में बहुत सारा सामान भी रखा गया है।

बगल में बहुत सारा किताब रखा हुआ हैं।

यह एक झरना जैसा दिख रहा है।

और पीछे में बहुत सारा घर भी है।

यहां पर फंक्शन हो रहा है और यहां पर बहुत सारा चेयर भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा खिड़की भी है खिड़की का कलर नीला है।

और दुकान के बाहर एक गाड़ी भी खड़ा है।

नीचे मे चार चेयर भी है और जो की रेड कलर का है ब्लैक कलर का है।

वह आदमी वाइट कलर का सर्ट पहना हुआ है और जूता उह मिट्टी कलर का दिख रहा है।

यह एक छोटा सा दुकान है जो कि यहां पर पानी भी बहुत सारा रखा हुआ है।

चेयर भी रखा गया है जो की चेयर का कलर ब्लैक है।

यह एक मंदिर है और मंदिर के बगल में दानपेटी रखा हुआ है जो कि रेड कलर दिख रहा है।

पंखा भी लगाया गया है और लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक चूड़ी का दुकान है और चूड़ यहां पर बहुत सारा चूड़ी भी रखा गया है।

और यहां पर बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है और नीचे में रेड कलर का कुछ बिछाया गया है।